ये हमारे इलाके का सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया है।

ये हमारे इलाका का एक झील है ये झील बोहोत ही बड़ा है इस झील का पानी बोहोत ही फ्रेश है।

दुकान है ये दुकान बोहोत ही बड़ा है यहाँ पर ढ़ेर सारे वुड का फर्नीचर मिलता है यहाँ पर --

ये हमारे इलाका का एक विद्यलय है ये विद्यलय का --

दस हजार रुपया का सेल होता हैं।

और ली आने के लिए यहाँ पर आते है यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रैन करा जाता है।

बहोत बड़ा सा मार्ट है इहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए इहाँ पर वर्कर्स लोग--

ये हमारे इलाका का एक पेट्रोल पंप है ये पेट्रोल पंप बहुत ही बड़ा है।

कैंप किया जाता है लोगो की परिसेवा दिया जाता है।

भी है यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर ढ़ेर सारा बड़ा- बड़ा पेड़ है और--

ये हमारे इलाके का एक है यहाँ पर एक सूंदर सा मूर्ति है।

ये हमारे इलाका का एक सड़क है सड़क के किनारे पे ढेर सारा बड़ा- बड़ा पेड़ है और जंगल भी है।

उगाया जाता है यहाँ पर लोग घूमने भी आता है ये एक रूरल एरिया यहाँ का नेचर बहुत ही खूबसूरत है।